और गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है व्हाइट कलर की और एक रेड कलर की भी यहाँं रस्सी बंधी हुई है नीचे पूरा --

एक टी शर्ट पहनी हुई है एक भैया हैं जोकि उसके पास खड़े हुए हैं।

हां से यहाँ पे प्ले ग्राउंड बना हुआ है भ पूरी बाउंड्री की हुई है।

बड़े-बड़े पेड़ पौधे हैं और सामने की ओर कुछ बना हुआ पत्थर ही पत्थर का उसमें कुछ लिखा हुआ है।

बोरे रखी हुई है वाइट कलर की जो कि मजदूर अंदर उठा के ले जा रहे हैं अंदर बहुत बड़ा गोडाउन बना हुआ--

और एक भईया उसकोअन्दर उठा के ले जारे है यापे साईकल भी खड़ी हुई है दो--

भैया ने ऑरेंज शर्ट एंड ब्लैक पेंट पहनी है एक भैया--

यहाँ एक बहुत बड़ा पोस्ट हाउस है।

अन्दर काफी ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं बाहर का--

और इसको पर्दे टाइप बाँध रखा है यलो कलर --

ऊपर से धूप वगैरा ना‌ है इसकी वजह से वो बाहर जो ये पेड़ है काफी बड़ा है नीम का पेड़।

रोड है काफी बड़ा बहोत बड़ा रोड है इसके सामने एक बहोत बड़ा घर बना हुआ है जो --

यहां पे काफी सारी लेडिसे बैठी हुई है सबने साड़ी वगैरह वेयर की हुई है चूड़ा पहन रखा है।

सबकी सब मैरिड हैं यहाँ पे कुछ शादी का फंक्शन चल रहा है कुछ र--

कलर से पेंट किया हुआ है ग्रीन पिंक यलो पर--

एक म्यूजियम टाइप का है जहां पे बहोत सारी ची--

येल्लो कलर का हेलमेट लगाया हुआ और बहुत सारा जमीन पर कोइला पड़ा हुआ है।

और उतार रहे और सामान भर रहे हैं थैले की अन्दर--

ग्राउंड है ये ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा--

काफी व्हाइट कलर से बाउंड्री की हुई--

आसपास बहुत बड़ा मंकी है ब्राउन कलर --

फोर व्हिलर कार रखी हैं रेड कलर की यलो --

खड़े हुए जिन्होंने व्हाईट कुर्ता पैजामा ब्लैक पगड़ी पहने हुए एक लेडीज़ भी--

एक भारतीय डाक इंडियन पोस्ट ए_टी_एम_ है जोकि--

ह रोड पे एक बच्चा भी है जिसने व्हाईट कलर की टी शर्ट पहनी है और इस--

यहा एक बोहोत बड़ी शॉप है जो की पूरी काच ही काच से बनी हुई है।

आस पास बहार की ओर गमले वाइट एंड ब्लू कलर से कलर किये हुए है और गमलो में बहोत खूबसूरत--

पिंक व्हाईट कलर से भी डेकोरेशन किया हुआ है बहुत ही बढ़ियाँ।

पड़े हुए है पे डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप के टेबल्स एंड लगी हुई है पूरा कांच ही कांच से बना हुआ है बोहोत ही प्यारा लग रहा है ये --

यहाँ एक बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ है यहाँ एक बहुत बड़ा हॉल है।

सारे घर एक जैसे एक ही कलर के पेंट हुए हैं।

कुछ बसें रेडी हैं जाने के लिए कुछ बस लोड हो रही--

उधर रेलिंग्स वगैरह लग रही हैं ऊपर की ओर ऊपर के फ्लोर पे।

जादा खूबसूरत मंदिर है अन्दर मूर्तियाँ लगी हुई--

बहुत बड़ा सा गेट है जोकि ब्लैक कलर का है और यहाँ--

हैं यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जोकि पार्किंग है।

सर्त यहाँ पे डेकोरेशन किये हुए है युप गुलदस्ते बड़े बड़े रखे हुए उनमे येलो वाइट पिंक फ्लावर है।

काफी ज्यादा स्पेस से बैठने के लिए काफी ज्यादा पेड़ पौधे हैं गार्डन टाइप बना हुआ--

कुले वगेरा लगे हुए है यहा आस पास पेड़ पोधे ही पेड़ पोधे है।